यह लकड़ी के ऊपर खड़े हुए है।

यहाँ एक स्टेचू दिख रहा है।

रंग का है सफेद रंग का है गुलाबी रंग का है।

हो रा है एक आंटी बैठी हुई दिख रही है।

पत्ते दिख रहे है ।